यहां पर बोहोत सारे लड़के खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे लड़के स्वेटर पहने हुए हैं एक लड़के ने ब्लैक कलर का स्वेटर ब्लू कलर का जूता तथा ब्लू कलर के जींस पहने--

दुकान के डेल सब्जी के सामने एक ड्रावर बने हुए हैं जिसमें भी बहुत सारे तरह के सामान रखे हुए हैं।

यह एक मंदिर का चित्र है जिसमें बहुत सारे मूर्ति तथा फोटो रखे हुए हैं।

दुकान का कलर आज हल्का उझला है।

लड़की के बालों पर रेड कलर के बहुत सारे क्लिप लगे हुए हैं।

उन दोनों के चेहरे को ब्लर कर दिया गया है दुल्हन ने लाल कलर के लहंगे पहने तथा दूल्हा ने उजाले कलर के शेरवानी।

दुकान के अन्दर बहोत सारे कुर्सी तथा टेबल रखें हुये है कुर्सी तथा टेबल का कलर लाल है।

यह स्टेशन के बाहर का चित्र है जोकि बहुत लम्बी रोड है।

मशीन का कलर ब्लैक ब्राउन तथा हल्का गुलाबी है।

मशीन के सामने एक सी एक बड़ा सा सीसा लगा हुआ है।

यह एक दुकान का चित्र है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक लेडीज दिखाई दे रही है जो कि साड़ी ले रही इसमें रेड कलर के बहुत छोटे चेयर हैं।

यह एक मैदान का चित्र है जिस मैदान में किसी का घर बनदा हुआ नजर आ रहा हैं।

तथा कुछ कप में उजले तथा काले रंग की डिजाइंस बनी हुई हैं।

दुकान का रंग उजला है तथा इसके बॉर्डर का रंग नीला है।

यह किसी बैंक का चित्र लग रहा है।

उस प्लेट में बहुत सारे जलेबी रखे हुए हैं जलेबी का रंग पीला है।

यह एक गाय के रखने का स्थान है जहां पर एक गाय घास खाते हुए नजर आ रही है।

गाय का रंग काला है तथा घास का रंग हल्का ग्रीन है।

यह किसी के रूम का चित्र है जहां पर एक टी_वी लगी हुई है।